जिसमे सामने जो है एक बोर्ड जो है साइन बोर्ड वो भी दिखाई दे रहा है और एक रस्ता बना है जोकि एंट्रेंस बना है येलो कलर का--

जो है वह डिस्प्ले हो रहा है और इसपे लाइट से एक सजाया गया है और ऑइल डेकोरेटेड है जो दीवार है वो बहुत ही अच्छा लग रहा--

सामने जो है सामने एक ग्रीन कलर बहुत ही बड़ा का पिंजरा दिख रहा है जिसके अंदर जो हैं एक पंछी बैठा हुआ है जो की येलो कलर पीला कलर की बार्ड है।

ये जो है ये एक सैलून का ही अंदर का ही एक पिक्चर है जिसमे यहाँ पे कुछ लोग कुछ लोग बैठा हुआ है जो की इसमें चेयर मे है ब्लैक कलर के और एक जो लोग है वह आदमी को खड़ा हो कर काम कर रहा हैं एक--

येलो कलर का यानी की पीला कलर का बोट रखा हुआ है और इसमें भी कोई लोग नहीं है खाली है ये--